रेस्टोरेंट यानी कि ढाबा है जो कि घर ही जैसा है लेकिन अच्छा है।

ईंट भी दिख रहा है फूल भी दिख रहा है और पूरा का भी दि--

यह एक बहुत बड़ा घर है जो कि नीचे कार को पार्किंग किया गया है।

बहुत बड़ा है पुराना भी बहुत बड़ा गेट है और पेड़ पौधे हैं।

भी है उसके गेट के सामने रोड भी है हरियाली भी आगे है।

यह कपड़ा का दुकान है जो कि यहां ओनर बैठता है मेम साब लिखल है।

यह पानी टंकी जैसा है बहुत बड़ा।

जो कि हरा पानी दिख रहा बहुत गरहा भी गहरा भी है।

बैंक है नीचे मोबाइल दुकान है फिर फोर जी सिम बिकता है कपड़ा दुकान है।

यहा पे लिखा है रेडमा मे ये दुकान है एक दुकान एकदाम की दुकान है इस--

कांच का गेट है लाइट जल रहा है स्कूटी है।

और एक व्यक्ति अपने हाथ में छाता लिया है रेलवे स्टेशन पूरे करकट का बना हुआ है नीचे पिलर से खड़ा है।

कुछ करकट भी है यहां नट बोल्ट और मशीन और हथौड़ी है।

वाईट फूल है हारा पत्ता डाला फिर रेड पत्ता है फिर।